यह कोई पहाड़ी है जहाँ पे गौतम बुद्धा जी की प्रतिमा रखी गई है और सामने मे एका-एक दो ठों घर बने हुए है।

यह बस एक पेट्रोल टंकी पर खड़ी हुई है जहाँ पर--

लड़का का स्टैचू बना हुआ है सामने मे तो तो कभी स्टैचू बना हुआ है जो भी बहुत प्यारा लग रहा है।